यहाँ पर एक खड़ा हुआ है जिसने रेड कलर की शूज़ पहन रखे हैं ब्लैक कलर का पेंट पहन रखा है| दो रास्ते गए हैं एक घर है उसमें दो गेट हैं।

एक गार्डन है जिसके आस-पास सो पत्ती लगी हुई हैं हरे कलर की घास लगी हुई है कुछ बड़े-बड़े पेड़ हैं जिनकी पत्तियों का रंग ग्रीन है ग्रीन है ।

ये बैंक ऑफिस है जिसमें पाँच चेयर डली हुई हैं एक बड़ा सोफा है एक उस साइड चेयर लगी हुई हैं यहाँ पर ऑफिस के बोर्ड लगे हुए हैं ।

ऊपर से कुछ पिस्ता-काजू डले हुए हैं| ये एक व्हाइट कलर की प्लेट में रखा हुआ है आस-पास पिंक कलर का बिछा हुआ है कुछ बर्निया रखी हुई हैं।

तीन से चार फ्लोर है नीचे मिट्टी है घास है उस का रंग हरा है कच्ची सड़क है ये यहाँ पे कीचड़ कचड़ा --

यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जिसका नाम स्वराज सेवन थर्टी फाइव एफ ई है।

उसमें एक फंसा हुआ है ट्रेक्टर व्हाइट और ब्लू कलर का है| ऊपर एक बोहोत बड़ा पेड़ है जिसकी पत्तियों का रंग हरा है पीछे खेत है कुछ लकड़ियां लगी हुई है कच्ची रस्ता है ।

एक तोलने वाली मशीन रखी हुई है मिर्ची रखी हुई है भट्टा रखे हुए हैं आलू है।

यहाँ पे लोहे के पाइप लगे हुए हैं कुछ लकड़ियां लगी हुई है जो उसमें कुछ चिपका हुआ है ककड़ पड़े हुए है नीचे बहोत सारे पाइप ऐसे रखे हुए हैं।

ये एक थीम पार्टी है जिसमें निशा नाम का बोर्ड लगा हुआ है पीछे स्विमिंग पूल है जिसमें पानी है उसमें उतरने के लिए जीने दिए गए हैं।